एक बड़ा सा शोरूम सा नजर आ रहा है उसके नीचे कुछ कुर्सियां लगी हुई है काफी कुर्सी लगी हुई है।